और एक गोपालगंजा ए_टी_एम भी है और ये बहुत अच्छा दिख रहा है और साथ में बाइक भी हैं।

और इसमें खिड़की भी है और एक साइकल जो है बाहर में रखा गया है और तीन चार व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

यह बहुत बड़ा बिल्डिंग है और इसमें लिखा है जे_सी_एम् और इसमें और भी बहुत कुछ लिखा हुआ हैं ।

घोड़ा नहीं तो हिरण का चित्र दिख रहा है और ये मंदिर बहुत खूबसूरत है इसका एक गेट दिखाया दिख रहा है और साथ में पेड़ पौधे भी हैं।

और इसका नाम है लकी बाराह शोरूम और इसमें बहुत सारे गाड़ी होंगे और यहां पर गेट भी है।

और उसका चश्मा है और पर्स है और साथ में यहाँ पर दो कैंची दिखा रहा हैं और यहाँ पर फेस वाश और क्रीम श्रीम बहुत सा।